यहां पर कुछ गर्ल्स कलाकारी करते हुए दिखाई दे रही है कुछ बॉयज भी है।

साइड में एक गमला में पौधा लगा हुआ है.

नीचे में एक टेबल है.

यह एक हाल टाइप का है.

एक मोटर सर्विसिंग की दुकान दिखाई दे रही है.

दुकान के पीछे बहुत सारे वृक्ष दिखाई दे रहे है.

सड़क पे एक गाड़ी पार हो रही है.

जिसमें एक बीच में एक कुआं बना हैं.

बगल में बहुत सारे ईटा रखा हुआ है.

उनमे कुछ सीमेंट का बोरा रखा हुआ हे.

इसके बाहर में दो-तीन गाड़ियां खड़ी है.

सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

बहुत सारे तार लगे हुए है।

इसके दोनों साइड बाउंड्री किया हुआ है।

कार्यालय के दीवाल पर एक बैनर चिपकाया हुआ हे.

ये एक गार्डन जैसा है।

टेबल पे फोन इयरफोन बोटल रखा हुआ है.

कुछ कागज़ पेपर भी हे.

उसके आगे में दो गमला रखा हुआ है.

नीचे एक कार्टून रखा हुआ है।

प्लेटफार्म नंबर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है.

यहां पे दो जेंट्स खड़े हुए दिखाई दे रहे है.

एक साइड में बैट बॉल टंगा हुआ है.

जो बहुत अच्छे तरीके से सजाई गई है।

यह एक ज्वेलर्स का दुकान लग रहा है।

एक जेन्ट्स पूजा करते हुए दिखाई दे रहे हे.

यहाँ पे एक थाली मे प्रसाद रखा हुआ हे.

यहां पे चेयर और डाइनिंग टेबल भी है.

ये एक पार्क जैसा लग रहा है.

बिच में एक चकच व्यू है दोनो साइड दो झंडा है.

यहाँ पे बहोत सारे चेयर डायनिंग टेबल लगे हुए हे.